तिरंगा है झंडा था रहा है भारतीय का लोग है।

इसमे एए एक मंदिर है इसमे सब पूजा सभी लोग करने अता है।

मार्कर से लिख रहा है।

पनन पंडाल है बहुत सुंदर देखने में लग रहें --